सब के बालों में गजरा लगा हुआ है एक आंटी ने साड़ी पहनी है जिनकी साड़ी ऑरेंज कलर की है एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी है एक ने ग्रीन और पिंक कलर की साड़ी पहनी है।

एक सैलून दिखाई दे रहा है सैलून काफी बड़ा है सैलून के में भैया बैठे है जिन्होंने पिंक शर्ट और जींस पेहना हुआ है सैलून के बाहर एक भैया खड़े हुए --

दोनों ने साड़ी पहनी हुई है। यहाँ पे मैदान मिट्टी का है रोड यहाँ पे छोटे-छोटे पत्थर दिख रहे है रोड पे एक साइकिल आ रही है साइकिल पे कोई बैठा हुआ है|

यहां पे काफी सारी कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियों पे लोग वाग चादर ओढ़ कर सो रहे हैं इस चादर का रंग पिंक वाइट है यहा पे उनके पास ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का ट्राली बैग र--

इस इमेज में हमें एक माला की दुकान दिख रही है यहाँ पर बहुत सारी माल टंगी हुई हैं अलग-अलग कलर की और अलग-अलग डिजाइन की बनी हुई है।

ये जो अभी हमें दो लडकियाँ दिखाई दे रहीं हैं जिनके पीछे एक कैफ़े है कैफ़े पे रिबन लगा हुआ है रेड कलर का कैफ़े के पास एक बक्सा रखा हुआ है डी.जे. का बॉक्स है।

यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक अंकल बैठे हुए हैं चेयर पे जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी है जिनके सर पे एक हैनकी बंधी हुई है यहाँ पे दो जेंट्स और हैं।